मुझे इस तस्वीर में एक माल की दिखाई दे रही है जहाँ पर लिफ्ट वाली सीढ़िया भी लगी हुई देखाई दे रहे है और कुछ--

--तरह बिछा हुआ है तो एक साइड पिंक कलर और व्हाइट कलर का टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे बहुत सारे स्टूल लगे हुए है गार्डन मे पेड़-पौधे के ऊपर लाइटिंग हुई डली हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा- सा गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहुत सारे लाईटिंग लगी हुए दिखाई दे रही है वहाँ पर बहुत सारे लाईट भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। गा--

में छोटे -छोटे पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और पेड़ -पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सफ़ेद बड़े बड़े पिलर भी बने हुवे दिखाई दे रहे है परदे के आसपास कुछ नारियल के झाड़ भी लगे हुवे दिखाई दे रहे है और निचे हरी भरी घाँस भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।